व्हाइट दिखाई दे रहा है बॉक्स यहां पर हमें छोटे छोटे दिख रहे है जिसमें कुछ बिस्किट्स और कुछ चीनी।

कुछ येलो कुछ व्हाइट कलर के दिखाई दे रहे है और ब्राउन कलर के भी हैं।

रेड कलर की और यहां पर ब्लैक कलर की कुछ बाइकें भी नजर आ रही है फ्लोर का कल --

दिखाई दे रही है कुछ व्यक्ति में पिंक कलर की धोती--

साथ में ही यहां पर व्हाइट बल्ब --

इस पिक्चर में हमें बड़ी सी शॉप दिखाई दे रही है जिसपे--

रेड कलर के कुछ यहां पर हमें--

इस पिक्चर में हमें ब्राउन और ब्लैक रंग की फ़्लोर की टाइलें नज़र आ रही हैं पीछे कुछ--

दिखाई दे रही है और पीछे वाइट कलर की विंडोज़ दिख रही है। सामने ग्राउंड फ्लोर का कलर यहां पर--

ये हमें यहां पर कुछ व्यक्ति दिखा--